यह एक पुस्तकों की दुकान है यहां पर बुक फोटो कॉपी स्पोर्ट्स का सामान मिलता है।

यहां पर टायल की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है साफ सफाई भी बहुत अच्छी है।

यह फोटो एक गांव की है इस फोटो में कुछ व्यक्ति झुंड बनाए खड़े हुए हैं उस झुंड में कुछ मनुष्य है कुछ औरते हैं।

और इनके पास से ही एक स्कूल बस गुजरी है जो की येलो कलर की है।

पर्दे के साइड में ही एक ए_सी भी है।

और वह मशीन उस का पेस्ट बना रही है और एक घर में लगाए जा रही है।

तस्वीर के पीछे एक घड़ी है जिसमें बारह बजकर पच्चीस मिनट हो रहे हैं।

यह एक कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है जो कि व्हाइट कलर की है।

यह किताबों की शॉप है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके हाथ में ब्लू कलर का फोन है।

जो कि दो मनुष्य है वे दो अपनी अपनी मशीनों पर कार्य कर रहे हैं।

और कुछ मनुष्य कार्य में लगे हुए हैं यहां पर बजरी और रेता भी पड़ा हुआ है।

यह पिक्चर सहारनपुर की है इसमें कुछ व्यक्ति अपनी बुलेट बाइक को सही करा रहे है।

यह पिक्चर सहारनपुर के हलालपुर नामक गांव की है जो कि यहां पर एस टी मारियस स्कूल भी है।

उस ए_सी की मदद से यहां का टेंपरेचर सत्रह डिग्री सेल्सियस है।

यह किसी जिले का एक क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा लगाई हुई एक पानी की टंकी है।

और यहां यातायात का साधन भी है।